एक बहुत बड़ी दीवाल दिखाई दे रही है और उस पे बहुत सारे पोस्टर लगे हुए है।

इस फोटो में मुझे एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क के साइड में मिट्टी दिखाई दे रही है।

मंदिर को सफ़ेद कलर से पेंट किया गया है और भी साइड मर बहुत सारे पेट लगे हुए है।

और एक आदमी सफेद कलर के कपड़े पहनें हुए दिखाई दे रहा है।

और उसके साइड में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है झाड़िया जैसे इस साइड इस साइड में एक पेड़ लगा हुआ है उसके लम्बे-लम्बे पत्ते दिखाई दे रहे है।

इस फोटो में मुझे एक दूकान दिखाई दे रही है दूकान में बहोत सारे समान रखे हुए दिखाई दे रहे है एक लड़का दिखाई दे रहा है उसने सीर में पन--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

मुझे इस पिक्चर में एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क पे टैक्सी जाती हुई दिखाई दे रही है साइड में एक पेड़ लगा हुआ दिखाई दे रहा है एक झोपड़ी दिखाई दे रही हैं।

मूर्तियाँ रखी हुई है तस्वीरें रखी हुई है।